सूर्यांश किराना स्टोर थोक फुटकर विक्रेता वे गिफ्ट सेंटर उचित रेट पर उपलब्ध है। ये भाई बोल रहे है कि ये किराना स्टोर है।

जहा पर जो है आपको मतलब गिफ्ट भी मिल सकता है। कोई भी राशन का सामान आपको उचित रेट पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको कहीं भी इधर परेशान होने की जरूरत नहीं है ये अपना ही आपको यह पर बताया।

देखिए कितनी सुंदर बाइक इधर खड़ी हुई हैं | बाइक भी हैं | स्कूटी भी है | दो बाइक हैं और स्कूटी है ।

जो बिल्डिंग बनाने के लिए जिस भी मैटेरियल की जरूरत पर यहाँ पर पड़ती है वो यहां पर उपलब्ध है और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है लाइट की वायर काफी अच्छे से जा रखी है।

योग हमेशा बन्दों को फिट रखता है हेल्दी रखता है योग के कारण ही हम अनेकों बीमारियों से दूर रहते हैं और हम दवाइयों से भी दूर रहते --

द बी.एस.एस. स्कूल आप देख रहे हैं सामने की तरफ और इसी के एक होर्डिग पर लिखा हुआ है प्राइड प्राउड टू बी इंडियन इंडियन होने पर बहुत गर्व है। सच में मुझे तो बहुत गर्व है इंडियन होने पर बहुत बढ़िया है --

यह बच्चे जो है छांव का पूरा मजा ले रहे हैं बोहोत ही सुंदर ये लग रही है आप देखे सामने की तरफ जो बिल्डिंग आपको दिख रही हो ऑरेंज कलर की वाइट कलर की उसकी खिड़कियां है कितनी प्यारी ये लग रही है।

ये देखिए मेरे महादेव बहोत खूबसूरत लग रहे है। बीचो बीच रखे हुए हैं जो भी इनके दर पर जाए खाली झोली वापस ना आये जो भी इनके दर पर जाये --

ये भी सब्जी की मार्केट है और इधर से जो है खरीदारी की जा रही है। सब्जी और फल की और कितनी साफ सफाई है इधर कितना स्वच्छ तरीका है देखिये।

यह देखिये यहाँं पे कितनी सुन्दर मतलब शर्ट है। शर्ट और जैकेट हैं। मेन्श के कपड़े हैं सारे यहाँं पर और काफी सारी शर्ट है।

मतलब मैं ये कहूं कि अ कैप्सिकम तो मुझे वैसे भी बहोत टेस्टी लगती है खाने में बहोत शानदार लगती हैं। जब खाते है बहोत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। य --